यह हमे एक बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारी अलमारीज रखी हुई है रैक --

ये कोई गेम प्ले कर रहे हैं मैदान में एक लेडी हैं जो कि रेड कलर की साड़ी पहनी हुई हैं और दूर हमे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमे एक बहुत बड़ा जो है जिम दिखाई दे रहा है सामने एक पर्सन हमे एक्सरसाइज करते हुए भी दिखाई दे रहे है बैकसाइड में एक पर्सन हमे और एक एक्सरसाइज दिखाई करते दे रहा है जो की ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे है।

सामने जो है एक कांच का हमें दरवाज़ा दिख रहा है एक दरवाज़ा खुला है और अंदर कोई पर्सन हमे दिखाई दे रहे हैं।

नदी में कुछ छोटे-छोटे से पत्थर रखे हुए है जिसपे एक जो है बॉय खड़े है ब्लैक कलर की टीशर्ट और जिन्स पहने हुए। साइड में हमे जो है बोहत बड़ा जो है ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें एक सलून दिखाई दे रहा है। सलून में हमें दो चेयर दिख रही हैं। एक चेयर पर एक पर्सन बैठे हुए हैं वह अपनी शेविंग करा रहे हैं और एक पर्सन खड़े होकर उनकी शेविंग कर रहे हैं।